सामने एक घर है जो कि बहुत उँचा है उसमे बहुत सारी खंबे लगी हुई है और पिछे कुछ लोग बैठे हुई है और कुछ खिड्किया बनी हुई है।

पीछे मे नीले कलर का डब्बा लगा है किसीमे लाल कलर का डब्बा लगा है किसीमे पीले कलर का किसीमे सफ़ेद कलर का डब्बा लगा हुआ है।

यह दो कलर की है गुलाबी कलर की और पीले कलर की पेड़ पौधे बहोत हरे भरे है इनकी पत्तिया सामने नज़र आ रही है जो कि बहोत छोटी छोटी दिख रही है और हरे भरे दिख रहे है।

सामने कुछ झूले दिख रहे है और एक फीसल पट्टी दिख रही है और चारो तरफ जालिओ के अंदर पौधे लगे हुए है जो कि हरे भरे है।